रखे हुए हैं और अमूल बटर भी रखे हुए हैं।

जिसमें से एक बोलेरो और बहुत सारे टेंपो नजर आ रहे हैं।

और इधर साइड में क्रिसमस ट्री लगे हुए हैं।

उधर दूर पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है सामने चेयर खड़ी है।

चारों तरफ घर नजर आ रहे हैं।

यह एक घर है जिसमें सिंगिंग अस्टार लिखा हो गया है।

खिड़कियों मे परदे लगे हुए है।

जो कि कलर किए हुए हैं व्हाइट और नारंगी कलर से।

कुछ लोग वो देख रहे हैं सामने दो लड़की बैठी हुई है।

और मोर के सामने पे एक लेडीज आ रही है रोड के किनारे छोटे छोटे पौधे हैं जो की बहुत ही ग्रीन है।

बीच में एक नीले रंग की बिल्डिंग दिखाई पड़ रही है और चारों तरफ हरे भरे पेड़ लगे हुए हैं।

बाबा वैद्यनाथ जी का मंदिर है।

चारों तरफ लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है।

इसके ऊपर में पंखे भी लगे हुए है एक कैमरे दिखाई पड़ रहे हैं।

यहां पे सामने में एक नदी दिखाई पड़ रहा है नदी के उस पार में बहुत सारे घर हैं।

बगल में एक खंबे दिखाई पड़ रहे हैं इ_आर_भी_ओ_एस_इ_आर_भी लिखे गए हैं।

यह एक सब्जी मार्केट है जिसमें से शिमला मिर्च दिखाई पड़ रहे हैं।

एक आदमी उन्हें हरी कलर की टी सर्ट में बेच रहे हैं।

दो तीन लड़के आ रहे। एक लड़की है जिसके चेहरा बलर है। सभी का लड़के का चेहरा बलर किया हुआ है ।

यह एक दुकान है जिसमें से बहुत से सारे समाने दिखाई पड़ रही हैं।

पुट रखे हुए हैं कार्टून बने हुए हैं और सामने में बहुत सारे सामान रखेंगे जैसे कि इसमें रखे हुए तेल रखे हुए--

दो लोग चेयर पर बैठे हुए एक चेयर पर बैठने जा रहे हैं।

यह एक ए_टी_एम जो की स्टेट बैंक ए_टी_एम है यहां पे कुछ महिलाएं कुछ पुरुष खड़े हैं।

और बहुत सारे लोग यहां पे फोटो खिंचवा रहा हैं सभी का चेहरा ब्लर किया हुआ हैं।

इसके ऊपर में एक बास बांस लगा हुआ है।

यह एक क्लासरूम है जिसमें एक वाइट बोर्ड में पढ़ाई कर रहे --

पार्क में झूलने का एक मशीन है बैठने का तीन चेयर भी हैं।

मॉल के गेट रेड कलर के हैं मॉल के जस्ट सामने पे एक इंडियन बैंक भी हैं और एक कोटक बैंक हैं।